कुछ रेड व्हाइट कलर के टब दिख रहे ग्रीन कलर की बाल्टी और बहोत सारी मछली और नीचे उसको रखा जाने वाला सफेद कलर का थर्माकोल का कंटेनर भी दिख रहा है।

लेफ्ट साइड में एक पर्पल कलर का बिल्डिंग है जिसपे एक बोर्ड लगा हुआ है उसपे लिखा है सैमुअल डेंटल क्लिनिक गैस एजेंसी रोड ।

वे बच्चे बीच में कुछ खेल रही है।

सामने एक वाइट कलर का घर दिख रहा है जिसमें नीचे रेड कलर की बॉर्डरिंग हुई है।

पीछे कुछ पेड़ दिख रहे है और इलेक्ट्रिसिटी वायर्स दिख रहे।

लाइट का बहोत सुंदर वर्क हुआ है इधर सोफा लगा हुआ है दोनों साइड में बीच में टेबल लगा हुआ है।

ये फोटो में संभवतः कोई कंस्ट्रक्शन वर्क जैसा दिख रहा है।

लेफ्ट साइड में क्रीम कलर का कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है जिस पे कुछ मशीन लगी हुई है।

यहां पे एक बैडमिंटन खेलने वाला बीच में नेट लगा हुआ है और आगे में एक कार खड़ी हुई और एक साइकिल खड़ी दिखाई पड़ती है।

इस फोटो में किराने का स्टोर दिखाया गया है यहां पे बहोत सारी डेली यूज की चीजे रखी हुई हैं।

ये रेड कलर का इस पे बाउंड्री वर्क हुआ है और येलो कलर की इसकी दीवारे हैं।

इस फोटो में एक डियर दिखाई दे रहा है वो डियर एक ओपन फील्ड में है।

पीछे में कुछ पेड़ और झाड़ियां दिख रही है सामने कुछ सुखी खास और पत्थर दिख रहे हैं।

दीवाल का कलर स्काई ब्लू ग्रीन दिख रहा है और बीच में कुछ वाटर जाता हुआ दिख रहा है।

पीछे में एक वाटर टंकी दिख रही है सीमेंट की जो कि व्हाइट और स्काई ब्लू कलर का है।

इस फोटो में हरियाली भरे शान्त वातावरण दिखाई दे रहा है ऊपर बहोत सुंदर सा आसमान दिख रहा है।